ये ब्रांड शॉप और उसके बाहर कुर्सियां रखी हुई दिखाई दे रही है कुछ कुर्सियां रेड कलर की है कुछ नीले कलर की है।

और खम्भे लगे हुए दिखाई दे रहे है और उसपे लिखा हुआ है जिला कोषागार कार्यालय मधेपुरा।

अ और उसके बाजू मे एक मोटरसाइकिल रखी हुई दिखाई दे रही है और थोड़े आगे बहुत सारी --

दिखाई दे रही है नीले कलर का गेट दिखाई दे रहा है और एक टांगा पे एक आदमी दिखाई दे रा --

इस इमेज मे मुझे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक दीवाल दिखाई दे रही है दीवाल के उस पार --

और दो-तीन यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रहे लड़के दिखाई दे रहे हैं और लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

और दीवाल पर एक पोस्टर चिपका हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे एक पेड़ बना हुआ है और तीन पेपर चिपके हुए हैं एक सफ़ेद कलर का एक गुलाबी कलर का।